तस्वीर मे हमे दो लड़के साथ जाते हुए दिखाई दे रहे है वही आस-पास हमे कुछ टावर और कुछ पेड़-पौधे भी नज़र आ रहे है देखने में ये दृशय सुबह का लग रा--

दृश्य में हम एक कच्ची रास्ता देख पा रहे है आस-पास का वातावरण बड़ा ही सुंदर लग रहा है हमें यहाँ एक पोल दिखाई दे रहा है।

इसे एक रास्ते का दृश्य है जहाँ हमें एक आदमी चलता हुआ दिखाई दे रहा है वहीं दूसरी तरफ से हमें कुछ गाड़ीयाँ आती हुई नजर आ रही--

वही उन दो भैंसों के साथ एक औरत भी जा रही है रास्ते के उस पार हमें एक बिल्डिंग दिखाई डे रहा है साथ ही हम इलेक्ट्रिक पोल भी देख--

देखने में इसका डिज़ाइन बहुत ही अलग हैं आज के जमा--

एक शादी का दृश्य है जिसका मेन गेट हमें बोहोत ही सूंदर तरीक़े से सजाया हुआ दिखाई दे रहा है वही हम यहाँ दूल्हे दुल्हन की फोटोस --

ये दृश्य एक होटल की है जो देखने में काफी अच्छा लग रहा है बहुत ही सुंदर तरीके से इसे बनाया गया है नीचे में हम कुछ पोस्टर ही दिखाई दे रहे है ।

यहां हम एक जे_सी_बी से बालू निकालने का काम कर पाते लोगों देख पा रहे हैं।